लाइट जलत ह आदमी सुंदर लगत ह कुल उपर एइसे छा छत छतरी छतरी बनल ह देखा में बहुत सुंदर लगत हव आवत हवं जात हवं आदमी।

अंदर बईठे के जगह ह मेहरारू कुल एक दु ठे लइका बईठल हवे खेकहरिया पहीनले खे सफेद पहीनले ह टीवी चलत ह मोदी जी का लगल ह ओहर पूरा टाइल्स लगल ह साफ सुथरा ह कुल आवत हवे जावत हवे शीशा लागल ह।